साइड मे बोर्ड लगा हुआ है जिसमे जो कि लाल रंग से पुता हुआ है इसमे कांच का एक गेट भी है।

कुछ मजदूर नजर आ रहे है जो की काम कर रहे है यहाँ पे हमें सीट नजर आ रही है जो की नीले कलर की है एक व्यक्ति इसमें नीली शर्ट पहने हुए है सफ़ेद शर्ट पहने हुए है बनियान पहने हुए है।

इसमें एक लड़का लग रहा है मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है मस्जिद हमारी गु गुबारों से सजी हुई है इसमें लाल रंग के गुब्बारे है कुछ सफेद रंगके गुब्बारे और कुछ नीले और कुछ हरे रंग के गुब्बारे है ।

इसमें एक गेट लगा हुआ है जो कि काले कलर से पुता हुआ है लड़के ने कुर्ता पहना हुआ है उसके उपर मफलर डाला हुआ है पीले कलर का --

एक माता का पंडाल लगा हुआ है ऊपर हमें एक लाइटे नज़र आ रही है इसमे माता की तस्वीर है जिसमे माता ने मुकुट लगाया हुआ है।

इसमें एक लड़का आई फ़ोन लिए हुए बैठा है उसने नीली शर्ट पहनी हुई हैउसने काली पेन्ट पहनी हुई है ये एक लाल कलर की टेबल पे बैठा है पीछे बुक्स वगेरा राखी हुई हैये एक बुक्स की दुकान है।